कपे में कॉफी है बोतल में पानी है लाइटें बहुत सुंदर जल रही है दिखाई --

बड़ा-सा फील्ड है उस फील्ड पे सड़क पे एक डॉगी सोया हुआ --

यह बहुत बड़ा कंपनी है उस कंपनी में आगे शीशा लगा हुआ है।

यहां खिड़की खुला हुआ है ग्रिले --

उसका पिलर है सुंदर पानी है।

सारे समान माल ढो रहा है लाइट जल रहा है।

नीचा घासे रखा हुआ है।

ये आसमान में बहुत सुंदर दिख रहा ये पेड़ है।

बहुत सारे आदमी बुक लेने के लिए--

दिख रहे हैं वहाँ पर खिड़कियाँ --

मकाने है वहां पर दो बोर्ड लगा हुआ है ब्लैक कलर का एक वो लोग --

ये है बस स्टैंड बड़ा-सा गेटे बना हुआ बगल में --

वाइट कलर से रंगा हुआ--